यह बस स्टेशन है यहाँ पे पांच छे आदमी खड़े हुए है और यहाँ पे तीन चार पांच छे बस है छे बस है।

अलग-अलग तरह के ब्लू नीला उजला तीन वैन है और वहाँ पे एक टावर दिख रही है और बहुत अच्छे कलर उसके बगल में पेड़ पौधे हैं।